आसमान भी दिख रहा है नीला छोटे-छोटे पत्थर वगैरा रखे हुए हैं।

ट्रेड इलेक्ट्रीशियन फिल्टर क्वालिफिकेशन मैट्रिक और लिखा हुआ है टंकी है तार गयी हुई है आसमान दिख रहा है।